एक औरत भी है जि जिनका ड्रेस पिला रंग का है काला रंग का दुपट्टा है उनके पीछे भी एक आदमी हैं।

यहाँ पर एक सड़क है जो गाड़ी-वाड़ी चल रही है और उनके सामने दुकान दुकान भी है और उनके सामने --

पिंक रंग का लिखा हुआ है और उनके नीचे सिनेमा रोड लिखा हुआ है जो ब्लू रंग का लिखा हुआ है यहाँ पर एक बहुत सारी वराई--

यहां पर बहुत सारे व्यक्ति है जो काम कर रहे हैं जो व्य दो व्यक्ति जो--

यहां पर बहुत सारे व्यक्ति है कुछ व्यक्ति लाइन पर खड़े हुए हैं दवाई दुकान के पास जो दवाई दुकान का कलर है सफेद--

यहाँ पर एक स्कूल है जो बहुत बड़ा है जो पीले रंग का हुआ है उनका पीछे एक--

और उनके बगल में जो व्यक्ति जो बैठा हुआ है उनके पीछे एक झूला है बहुत सारा और यहाँ पर दो व्यक्ति है जो बात कर रहे हैं आपस में।

लिया हुआ है और वहां का--

यहां पर बहुत अच्छा दृश्य हैं जो पहाड़ों पहाड़ों में पहाड़ों से पानी निकलना यहां पर बहुत सारे व्यक्ति नहा रहे हैं जो--

और एस_एस_के हैं एस_जी_के है इनमें बहुत सारे बोर्ड है जिनमें सफेद रंग के हैं ऑरेंज रंग के हैं लाल रंग के हैं।

ब्लू रंग का साड़ी पहनी हुई हैं और इनके बगल में लाल रंग का और उनके बगल में पिंक रंग का--

यहां का डृश्य बहुत अच्छा है यहां य यह डृश्य सुबह का है जो यहां प कुच बहोत सारे बिल्डिंग हैं जो --

ल सफेद रंग का ड्रेस पहना हुआ है उनके बगल में एक चिपकते वो जा रहे हैं पैदल जो वह सफेद रंग का काला पैंट पहने हुए हैं।

वे व्यक्ति सफेद रंग का टी सट पेहना है उनके नीचे एक ब्लैक रंग का पैंट पेहने हुए हैं और यहां यहां प यहां पर एक बहुत सारे व्यक्ति बैठे हुए हैं।

और उनके सामने बहुत सारे व्यक्ति बैठे हुए हैं यहाँ पर एक व्यक्ति जो छाता लेकर बैठा हुआ है जो छाता काले रंग का वो--

यहां पर को बहोत सारे समान रखे हुए हैं।